आठ लड़कियाँ बैठी हुई हैं एक लड़की कुछ गोंद से चिपका रही हैं।

आठ लड़कियाँ हैं जो बेंच के ऊपर बैठें हैं कुछ ड्राइंग बना रहे हैं कुछ एक - दूसरे को देख रहे हैं।

ओ नीले कलर की से बाहर कुछ कपड़े लटके हुए हैं जो लाल कलर की हैं और काला कलर और नीले कलर की हैं।

बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिनका ड्रेस का रंग नीला हैं जो ड्राइंग बना रहे हैं एक लड़का साइड पे बैठा हुआ हैं ओ पीले रंग का ड्राइंग का पेज पर बना रहा हैं जो हरे रंग की पट्टी किये हैं ओ अभी - अभी टेपिंग कर रहा हैं पीछे खिड़की हैं।

एक छोटी बच्ची जो बैठी हैं उसके बगल में चप्पल रखा हुआ हैं और कैंची रखी हुई हैं।

जो डॉक्टर तीन मरीज सामने बैठे हुए हैंजो से बात कर रहे हैं जो डॉक्टर हैं पेन रहा हैं उसके बगल में एक फ़ोन रखा गया हैं बी. एस. एन. एल. का --

एक बिल्डिंग के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और बिल्डिंग का जो रंग हैं सफ़ेद रंग का हैं और नीले कलर की दीवाल हैं।

साड़ी पहनी हुई हैं और लाल कलर की साड़ी पहनी हुई हैं जो मुँह फाड़ी हुई हैं और माथे पर पिले कलर की चन्दन लगाये हुये हैं पीछे गुब्बारे हैं जो हरे रंग --।